इस दुकान के बाहर बोर्ड पर लिखा है रोलेक्स ड्राई क्लीनर्स लॉन्ड्री ।

इस दुकान में लकड़ियों के सामान रखे हुए हैं इस दुकान में एक--

इस दुकान के बाहार लिखा हैं श्री साई कृपा ग्लास फिटर कांच वाला--

मुझे इस फोटो में एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक दुकान बंद है दूसरी दुकान में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ है।

इस पेड़ों के बीच में एक छोटा मंदिर बना हुआ है।

कुछ टी-शर्ट्स भी हैंग की हुई दिखाई दे रही --

मुझे इस चित्र में एक दुकान दिखाई दे रही--

इस तालाब के पास एक पार्क दिखाई दे रहा हैं। इस पार्क में एक--

मुझे इस चित्र में एक कोचिंग क्लास दे रही है।

इस कोचिंग क्लास में बहुत सारी बेंच और टेबल रखी हुई है।